एक कोई गेट लगा हुआ दिख रहा है एक दिवाल भी बनी हुई है।

एक डैम दिखाई दे रहा है जिसमें नदी के बहुत सारे फाटक बने हुए हैं।